गेट नंबर चार का है।

और इया मंदिर हरे रंग का है और इसके ऊपर त्रिशूल लगे हुए हैं।

कर रहे हैं और दूसरे व्यक्ति अपने--

तीन दरवा मतलब द्वार है जिसे दरवाजा --

कार भी जा रही है।

और उसका जो द्वार है वो भी रेड कलर का है और बीच में एक --

बहोत- बहोत -बहोत ज्यादा इमरजेंसी है।

बादल बहुत ही ज्यादा मस्त दिख रहै है और नीचे बोहोत --

मॉल की जो बनावट है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर --

और सिल्वर कलर की है सब--

और खेती अभी धान को बोया गया है।

एक गेट भी है जिसको खोलकर मंदिर के अंदर जाया जाता है उसके बाद उसको --

जो हाथी के सूंढ़ के बीच --

जिसमें से एक व्यक्ति कुछ किताब लेने के लिए आए हुए हैं।